नमस्कार दोस्तों क्टर्टल के परिचय पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में मैं आपको क्टर्टल की शुरूआती मूल बातों से परिचित कराऊँगा
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे क्टर्टल विंडो एडिटर कैनवास मेनू बार टूलबार हम इसके बारे में भी सीखेंगे टर्टल को घुमाना
लाइन्स खींचना और दिशा बदलना
त्रिकोण बनाना
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबंटू लिनक्स ओएस वर्ज़न 1204 क्टर्टल वर्ज़न 081 बीटा का उपयोग कर रहा हूँ
क्टर्टल क्या है
बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए क्टर्टल एक मुफ़्त टूल है
यह कंप्यूटर की सहायता से इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए उपयोगी है
क्टर्टल डाउनलोड के लिए httpedukdeorgkturtle पर उपलब्ध है
क्टर्टल प्रोग्रामिंग आसान और सुगम बनाता है
बच्चों को बुनियादी गणित सिखाने में मदद करता है
कमांड का अनुवाद प्रोग्रामर की बोली जानेवाली भाषा में करता है
कमांड को दृश्यों में बदलता है
हम सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके क्टर्टल संस्थापित कर सकते हैं
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट httpspoken tutorialorg पर उबुंटू लिनक्स ट्यूटोरियल देखें
एक नया क्टर्टल एप्लिकेशन खोलें
दश होम पर क्लिक करें
सर्च बार में क्टर्टल टाइप करें
और क्टर्टल आइकन पर क्लिक करें
एक विशिष्ट क्टर्टल विंडो इस तरह दिखती है
यह मेनू बार है
मेनू बार में ऊपरी ओर आपको मेनू आइटम्स मिलेंगे
फाइल एडिट कैनवास रुन टूल्स सेटिंग्स और helpऑप्शन्स टूल बार में आप उपयोगित अधिकतर कार्यों के लिए जा सकते हैं
एडिटर बाईं ओर है जहाँ आप टर्टलस्क्रिप्ट कमांड्स टाइप कर सकते हैं
एडिटर के अधिकतर फन्क्शन्स फाइल और एडिट मेन्यूस में मिल सकते हैं
यहाँ एडिटर में कोड दर्ज करने के कई तरीके हैं
सबसे आसान तरीका है उदाहरण का प्रयोग करना
Fileमेनू में जाएँ एक्जाम्पल्स चुनें
यहाँ मैं फ्लावर चुनूँगा
चयनित उदाहरण का कोड एडिटर में खुलता है
कोड रन करने के लिए मेनू बार या टूल बार से रुन बटन पर क्लिक करें
दूसरा तरीका है कि एडिटर में अपना खुद का कोड सीधे टाइप करें
या कुछ कोड एडिटर में कॉपीपेस्ट करें
उदाहरणस्वरूप अन्य क्टर्टल फ़ाइल्स से कैनवास दाईँ ओर है जहाँ टर्टल आपके चित्र बनाता है
टर्टल कैनवास पर एडिटर से मिली हुई कमांड्स के अनुसार चित्र बनाता है
टूल बार में रुन ऑप्शन एडिटर में कमांड्स का निष्पादन शुरू करता है
यह निष्पादन गतियों की एक सूची प्रस्तुत करता है
फुल स्पीड फुल स्पीड स्लो स्लॉवर स्लोवेस्ट और step by स्टेप एबोर्ट और पौसे ऑप्शन्स आपको निष्पादन को क्रमशः बंद करने और रोकने की अनुमति देते हैं
अब यह कोड रन करें
टर्टल कैनवास पर एक फूल बनाता है
जब आप एक नया क्टर्टल एप्लिकेशन खोलते हैं
डिफ़ाल्ट रूप से टर्टल कैनवास के बीचों बीच होता है
अब टर्टल को घुमाएँ
टर्टल तीन प्रकार से घूम सकता है
यह आगे की ओर घूम सकता है
यह पीछे की ओर घूम सकता है
यह बाएँ या दाएँ घूम सकता है
यह स्क्रीन पर अपने स्थान के लिए सीधे भी जा सकता है
मैं प्रोग्राम टेक्स को जूम करता हूँ जिससे यह शायद थोड़ा सा धुंधला हो सकता है
एक साधारण उदाहरण के माध्यम से चलते हैं
अपने एडिटर में निम्न कमांड्स टाइप करें160 रिसेट फॉरवर्ड 100 टर्नराइट 120 फॉरवर्ड 100 टर्नराइट 120 फॉरवर्ड 100 टर्नराइट 120 ध्यान दें कि जैसे ही हम टाइप करते हैं कोड का रंग बदलता है
इस विशेषता को हाइलाइटिंग कहते हैं
विभिन्न प्रकार के कमांड्स भिन्न रूप से चिन्हांकित होती हैं
जो इसे कोड के बड़े ब्लॉक्स पढ़ने के लिए आसान बनाता है
मैं अब कोड समझाता हूँ
रिसेट कमांड टर्टल को डिफाल्ट स्थिति में सेट करती है
फॉरवर्ड 100 कमांड्स टर्टल को 100 पिक्सेल्स से आगे बढ़ाता है
टर्नराइट 120 कमांड्स टर्टल को 120 डिग्री वामावर्त घुमाता है
ध्यान दें कि त्रिकोण बनाने के लिए इन दोनों कमांड्स की तीन बार पुनरावर्ती होती हैं
अब कोड को निष्पादित करें
मैं स्लो स्टेप चुनूँगा ताकि हम समझ सकें कि कौन सी कमांड्स निष्पादित हो रही हैं
यहाँ त्रिकोण बन चुका है
दूसरा उदाहरण देखते हैं और अपना कैनवास सुशोभित कैसे करें यह भी सीखते हैं
रिपीट कमांड का प्रयोग करके एक त्रिकोण बनाते हैं
मैं वर्तमान प्रोग्राम हटा दूँगा
स्पष्ट दिखने के लिए मैं प्रोग्राम टेक्स झूम करता हूँ
अपने एडिटर में निम्न कमांड्स टाइप करें160 रिसेट कैनवासाइज स्पेस 200200 कैन्वास्कलर स्पेस 02550 पेनकलर स्पेस 00255 पेनविड्थ स्पेस 2 रिपीट स्पेस 3कर्ली ब्रेकैट्स में फॉरवर्ड 100 टर्नलेफ्ट 120 अब मैं कोड समझाता हूँ
रिसेट कमांड टर्टल को उसके डिफ़ाल्ट स्थिति में सेट करती है
कैनवासाइज 200200 कैनवास की चौड़ाई और लंबाई 200 पिक्सल्स में सेट करता है
कैन्वास्कलर 02550 कैनवास को हरा बनाता है
02550एक RGBकॉम्बिनेशन है जहाँ सिर्फ़ हरे रंग की वेल्यू 255 सेट है और अन्य 0 के लिए सेट किए जाते हैं
यह कैनवास को हरा बनाता है
पेनकलर 00255 पेन का रंग नीला सेट करता है
आरजीबी कॉम्बिनेशन जहाँ नीले रंग की वैल्यू255 सेट है
पेनविड्थ 2 पेन की चौड़ाई को 2 पिक्सेल्स सेट करता है
रिपीट कमांड्स नंबर और कर्ली ब्रेकैट्स में कमांड्स की सूची के साथ है
यह कमांड्स को कर्ली ब्रेकैट्स में संख्या को निर्दिष्ट करके दोहराता है
यहाँ फॉरवर्ड 100 और टर्नलेफ्ट 120 कमांड्स कर्ली ब्रेकैट्स में हैं
रिपीट कमांड 3 नंबर के बाद है क्योंकि त्रिकोण में 3 बाजू हैं
ये कमांड्स लूप में 3 बार रन होती हैं
त्रिकोण के 3 बाजू बन चुके हैं
अब कोड रन करें
प्रोग्राम के निष्पादन के लिए मैं स्लो ऑप्शन चुनूँगा
कैनवास का रंग हरा होता है और टर्टल एक त्रिकोण बनाता है
अब फ़ाइल सेव करें
फाइल मेन्यू में सेव एएस चुनें
सेव एएस डायलॉग बॉक्स खुलता है
मैं फ़ाइल सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर चुनूँगा
मैं फ़ाइल का नाम ट्रायंगल टाइप करूँगा और सेव बटन पर क्लिक करूँगा
ध्यान दें कि फ़ाइल का नाम ऊपरी पैनल में प्रदर्शित होता है और यह सभी टर्टल फ़ाइल्स की तरह डॉट टर्टल फ़ाइल के तौर पर सेव होती है
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने इनके बारे में सीखा है क्टर्टल्स के एडिटर कैनवास मेनुबार और टूलबार टर्टल को घुमाना लाइन्स खींचना और दिशा बदलना
त्रिकोण बनाना
नियत कार्य के तौर पर मैं चाहता हूँ कि आप कमांड्स का प्रयोग करके एक समकोण चतुर्भुज बनाएँ
फॉरवर्ड बैकवार्ड टर्नलेफ्ट टर्नराइट और रिपीट अपनी पसंद के अनुसार बैकग्राउंड कलर पेनविड्थ और पेनकलर सेट करें
आरजीबी कॉम्बिनेशन में वेल्यूज़ बदलें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें httpspoken tutorialorgWhat इस आ स्पोकेन ट्यूटोरियल यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद